शीशा लगाया गया है और एक रॉड लगाई गई है जिसकी छत दोनों तरफ--

जो कुछ वाश बेसिन भी रखे हुए है जो कि अलग अलग डिजाइन के है।

इस चित्र में हमें यह कोई बहोत फर्नीचर की दुकान दिखाई गई है।

जीसके बीच में थोड़ी सी जगह बची है यह देखने में कोई गुफा लग रही है।

उपर कुछ बल्ब लगाए गए हैं और कुछ फूलों के लड़ियां लगाई गई है।

इस चित्र में हमें यह कोई बस स्टैंड दिखाया गया है जहां पर हरे रंग की और काले रंग की बहुत सारे बसें खड़ी हुई है।

और एक दीवाल है जिसके ऊपर सफेद रंग का पेंट है जिसके ऊपर लोहे की ग्रील लगाई गई हैं।

जिसमें कुछ चुने से ग्राउंड बनाया गया है।

और ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं जिसके अंदर दो आदमी फंसे हुए हैं।